यहां पे बहोत सारे बेंचा हैं और यहां पे टेबल्स के ऊपर बहुत सारे बुक्स है और यहां पे लाल कलर की चेयर भी है और यहां पे--

हैंडले हैंडल्स भी रखे हुए है अलग अलग कलर के अलग अलग झाली भी बांधी हुई है वे कपड़े डालने के लिए बास्केट भी रखी हुई है यहाँ पे स्टील की है ये सब सामान--

यहाँ एक पानी का फुवारा हैं यहाँ पे फत्तरो का पेड़ हैं और इसमे छोटी छोटी हथेली घास हैं बड़ी बड़ी ब्लू कलर की लाइटिंग भी डाली गयी हैं और यहाँ पर उसके --

चारो तरफ बाउंड्री उठाई गई है और यहां पर एक लड़का बैठा हुआ है ऊपर आसमान भी दिख रहा है यहां पर व्हाइट कलर का पानी भी आ रहा है नलों में --

और ओपन किया गया है और यहा पे गाड़ी का काम किया जा रहा है रे रेड से--

पाटिया है निचे पानी भी है और यहाँ पे मैकेनिक्स भी पीछे है और यहाँ पे लेफ्ट साईड में एक ब्लैक कलर का बॉक्स भी है और यहाँ पे गाड़ी पे बोहोत --

और उसके सामने बड़े छोटे हरे हरे कलर के पेड़ भी दिख रहे हैं और यहां पे पानी की वाटर बाॅटल भी पड़ी--

ये एक बड़ा सा ग्राउंड है और यहां पे बैडमिंटन फुटबॉल खेला जाता है यहां पे आजू बाजू--

यहां पे ऊपर ऑफिस के तरह बोर्ड भी रखा गया यहां--

और यहां पे पीछे वॉल से चिपकाया गया और यहां पे बहुत सारे बेंचो को रखा गया है।

यहाँ पे ये लक्ष्य इंटर नेशनल स्कूल हैं और यहाँ पे दो लेडीज और दो गेंट्स नाच रहे हैं और उनके हाथो में बाँसुरी हैं ।

और यहाँ पे कैलेंडर है यहाँ पे बहोत सारे पेन भी है और अलग अलग शेल्फ में अलग अलग बुक्स रखे गए यहाँ पे प्रिंटिंग भी किया जाता है पेपर्स भी ऐ फोर शीट्स भी मिलते है यहाँ पे --

यहां पे बहोत सारे फर्शियां बिछाए गए है और यहां पे बड़ा सा ये कॉलेज है।

हर साइज का कैमरा मिलता है अलग अलग कंपनी के गोल चपटे कैमरे भी मिलते है यहाँ पे दिवार का कैमरा माइक्रो कैमरा सब कैमरा मिलते है यहाँ पे वायरिंग भी की गयी है यहाँ पे अलग अलग--

व्हाइट और ब्लू कलर की बांडी बाउंड्री उठाई गई है आजू बाजू भी बहुत सारे--

ये एक हाईवे रोड है रेवाड़ी जंक्शन है नो पार्किंग यहा पे बोर्ड लगाया गया है ।

बाइक में अपने फोटो ले रहा है और ये फेस जरा तैरा किया हुआ है.

यहा पे ये चार सिस्टर जो की वाइट साडी में है और यहा निचे भी है और--

यहां पे ये बकरियों का कारखाना है यहां पे अलग अलग कलर के बकरियां चर रहे हैं नीचे मट--

ये टाइल्स की दुकान है यहा एक डिपार्टमेंट में बहुत सारी दुकाने लगी हुई है यहा पे राईट साइड में दीवार भी उठी हुई है।

अद्र्सल हम बेठे जगह फोटू भी है यहा पे चाकरी भी है यह पे लडकी लडके सभी लोग ओरते आदमी यहा बेठे हुए है।

बुक्स रखे हुए हैं और ये आदमी अपने आप की फोटो ले रहा है और पीछे फेविकोल के डब्बे भी हैं यहाँ पे पैड्स हैं पेंस हैं किताबें हैं।

ऊपर आसमान भी दिख रहा है यहां पे छोटे छोटे लकड़ी के खम्भे भी है लेफ्ट साइड में खोदे हुए आ माटी भी निकल गई है इसकी यहां --